जैसा की हम देख सकते है सामने बहुत सुन्दर पहाड़ियाँ दिख रही है जो की बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ दिख रही-- पहाड़ियाँ बहुत ही ऊंची - ऊंची दिख रही जो कि बहुत ही सुन्दर लग रही है।

सफ़ेद कलर के शेड के टाइप दिख रहे है जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे है पीछे टेंट लगा हुआ दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने पेड़ दिख रहे हैं जो की हरे-हरे दिख रही है जो की बहुत सुंदर लग रहे है बहुत ही प्यारे लग रहे--

साथ ही हम देख सकते है सामने वो बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत ही बड़िया नजारा दिख रहा है हम को बोहोत ही अच्छा और बोहोत ही सुंदर आसमान दिख रहा है जो की बहुत ही प्यार लग रहा है सामने सूरज चमकता हुआ दिख रहा है जो की बोहोत --

जैसे की हम देख सकते है सामने कुछ श्री कृष्णा हाइट्स सोसायटी कर के नाम लिखा हुआ दिख रहा है जो कि पीला कलर का है बोर्ड दिख रहा है।

नीचे वो घास दिख रही है जो कि हरी- हरी दिख रही है जो की बहुत ही बढ़ियाँ लग रही है पीछे हमको बहुत ही सुंदर नजारा दिख रहा है जो की बहुत ही बढ़ियाँ लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है नीचे हमको घास दिख रही है जो की--

बहुत ही सुंदर है सामने हमको बाइक दिख रही जोकि बहुत ही बड़िया दिख रही है कार दिख रही है जो के सफेद दिख रही है जोकि बहुतही बड़िया लग रही है ऊपर आसमान दिख रहा है जोकि नीला और सफ़ेद दिख रहा है पेड़ दिख रहा है जो के हरे-हरे।

जैसा कि हम देख सकते है सामने हमको पहाड़ियाँ दिख रही जो कि ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही जो कि बहोत ही सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही पहाड़ियों में हमको पेड़ लगे हुए दिख रहे जो कि बहोत ही हरे- हरे भरे पेड़ दिख रहे जो कि बहोत ही बढ़िया लग--

बहोत ऊंची ऊंची पहाड़ी दिख रही है जोकी बहुत ही बड़िया पहाड़ीयां लग रही है पहाड़ियों के बीच मे से फूल बनते हुये दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा फूल दिख रहा है फूल के नीचे हमको नदी दिख रही है जोकी बहती हुइ दिख रही है जिस का पानी नीला और हरा दिख रहा है जोकी बहुत ही बड़िया लग रहा है साइड मे घर दिख रहे है जोकी--

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको कार्यालय कार्यपालन अभियंता का एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जो कि काले और सफेद अक्षरों में दिख रहा है दीवारे दिख रही हैं जो की गुलाबी नहीं बल्कि ऑरेंज कलर की दिख रही है पट्टे दिख रहे हैं जो की गुलाबी दिख रहे है।